ऊपर में मुझे बर्थडे कार्ड सभी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे इंसान दिखाई दे रहा है।

और ये रूम के पीछे में मुझे खिड़किया सब भी दिखाई दे रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे वो बिल्डिंग में बहुत सारा खिड़कियां और दरवाजा सब भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारा इंसान लोग दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे इंसानों दिखाई दे रहा है और मुझे--

वो कोना से मुझे बड़ा बड़ा सा पेड़ सब भी दिखाई दे रहे है।

से बना हुआ घर सब भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है जहां पर मुझे गोल्ड प्लस --

इस तस्वीर मे मुझे बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है। जहां पर मुझे--

खाने का चीज सब भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे यह बिल्डिंग का टीना भी दिखाई दे रहा है जो कि रेड कलर है।

कलर का दिखाई दे रहा है।

पीछे में मुझे स्वीट पोटेटोस सब भी दिखाई दे रहा है।

बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है और वो बिल्डिंग में मुझे खिड़कियां सब भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे बहोत सारा बकरी सब भी दिखाई दे रहा है और--

जो कि ग्रीन पिंक ब्लू वाइट कलर से है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और दूर में मुझे बहुत सारा पानी खेती सब भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बरा सा लेटर बॉक्स दिखाई दे रहा है। जो की रेड कलर से पेंट करके है।

और एक इंसान का माथा भी दिखाई दे रहा है।

बैठने के लिए सोफा सेट और चेयर सभी दिखाई दे रहे है।

इस साइड में मुझे किस्म किस्म का सामान सब भी दिखाई दे रहा है ।

यहां पर मुझे बहुत सारा खिड़कियां और दरवाजा सभी दिखाई दे रहा है।

और वो रुम के बाहर में मुझे कुछ पोस्टर भी लगा में दिखाई दे रहा है।

और दो इंसान भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक इंसान दिखाई दे रहा है और एक दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे बहुत सारा पेन सब भी दिखाई दे रहा हैं।